लोग खड़े हैं व इस चर्च के इर्दगिर्द बहुत से सरसब्ज़ --

ये एक दुकान है जिसका नाम ए वन नाइन जे_बी पार्लर है।

इस कमरे में बहुत से मेज पड़े हैं जिनका रंग सफेद है।

और इस माल की दीवारों का रंग सफेद है और सीढ़ियों का रंग काला है और इसमें बहुत सी लाइटें लगी है।